इसमें सुरक्षित ही बनाया जाता ।

यह एक किराने की दुकान है। यहाँ पर हर चीज़ मिलती है।

यह कोई गिफ्ट में शादी विवाह --